ये सामने एक दुकान दिखाई दे रही है और यह कॉपी किताबो की दुकान है यहाँ काफी सारी किताबे रखी दिखाई दे रही है और यहाँ एक बैठा व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और सीमेंट के दो है और यहाँ सारे में काफी सारे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है यहाँ टाइले बिछी हुई है।

जैसा की आप देख रहे है सामने एक रेल खड़ी दिखाई दे रही है और यह नीले रंग की है और इसपे इंडियन रेलवे लिखा गया है और यहाँ बैठने की काफी सारी बेंचे बनाई गई है।

जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक प्लेट दिखाई दे रही है जो कि वाइट रंग की है और इस पर काफी सारे पराठे रखे हैं।

जो कि मेथी के हैं और यह खाने में बोहोत लजीज होते हैं और यह एक मेज पर रखे गए हैं।

सामने एक गेट नजर आ रहा है जो कि लोह का है और यहाँ एक हवेली सी नजर आ रही है और यहाँ खिड़की नजर आ रही हैं और यहाँ छोटे-छोटे पोधे नजर आ रहें हैं।

जैसा कि आप देख रहे हैं सामने बड़े-बड़े शीशे लगे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ काफी सारी बल्फ लगे दिखाई दे रहे हैं।

सा कि आप देख रहें हैं काफी बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है और काफी सारे लड़के दिखाई दे रहें हैं और कुछ खेलते दिखाई दे रहा है सामने एक काफी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।